ग्रपेस है गुआवा है।

जैसे आप ये फोटो देख रहे यहाँ हमें --

और बाकि इसमें एक गैप --

आ आपका बागान है और वहाँ लेक --

फ्रंट रूम का दरवाजा खुला हुआ हैं।

तो आप लोग जैसे ये फोटो देख रहे हैं। ये एक राशन का दुकान है। जिसमे आलू प्याज गोभी --

नई है और इसमें आटा है चावल है।

जोकि हाथ पकड़ के बाहों में बैठी हुई खड़ी हुई है।

तो जैसे कि आप ये फोटो देख रहे ये एक ऐडवटाइसमेन् --

बम्बू से प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया गया है कि ओने प्रोग्रेस --

और घास फुस भी बोहोत सारा है और पहाड़ दिखने में बोहोत सुन्दर भ्यू आ रहा है।

अर् जैसा कि दोस्तों आप देख रहे ये बोहोत सुन्दर आर्ट --

ये तस्वीर कहना चाहता है की इसमें एक ब एक बहुत बड़ा आलीशान मंदिर भी दिखाई दे रहा है।